जिसमें ये सब आइटम वगैरह जो भी पेटिस वगैरह हैं।

यहां एक रेस्टोरेंट का होल दिखाई दे रहा जिसमें एक टेबल के साथ चेयर्स लगी हुई है ऐसे ही काफी सारी टेबल्स लगी हुई है।

के ऊपर पुल बना हुआ है जहां से आने जाने का रास्ता है।